उसके आगें लाल कलर का है। उसके आगें एक और लाल कलर का ट्रक है और बगल में पीले कलर पीले और काले कलर कुछ बनी है पट्टी आंगे दूसरी साइड एक घर है।

और यहाँ पर कुछे तंबाकू के पैकेट टंगे हुए हैं खाने के चिप्स --